उसके बाद मुझे कुछ पौधे लगाया हुआ भी दिखाई दे रहा है।

कुछ जीन्स को हैंगर पे लटकाया हुआ भी दिखाई दे रहा है मुझे इस तस्वीर पर--

इसके बाद में मुझे प्लास्टिक का चेयर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर एक इलेक्ट्रिक भी दिखाई दे रहा है।

सेल्फ के अंदर कई सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रहा है उसके बाद मुझे कुछ कार्टून भी दिखाई दे रहा है।

हैंगिंग फ्लावर पॉट दिखाई दे रहा है।

उसके बाद मुझे इस तस्वीर में कई सारे बच्चे ड्रॉईंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।

ये इस तस्वीर पर बहोत सारा लाइट जलाया हुआ दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस तस्वीर पर पन्नी का ग्लास भी दिखाई दे रहा है।

दो लड़कियां भी दौड़ती हुई दिखाई दे रहा है मुछे इस तस्वीर पर इलैक्ट्रिक पोस्ट भी दिखाई दे रहा है।